आदि का काम किया जाता है। यहाँ पे एक जाली भी दिख रही है।

यहां कुछ खंबे दिख रहे है यहां सामने एक बच्चा दिख रहा है दुकान के अंदर --

मूर्ति का मुकुट बहुत सुंदर सजा है बांसुरी भी दिख रही है नीचे भी कुछ फ्लावर्स बिखरे हुए रखे है चढ़े --

यहाँ एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ पत्थरों से बनी हुई --

मेहरून है और ऑरेंज है लाइट कलर का धागा है। यह अलग-अलग डिजाइन की राखियां बिक रही हैं।

यहाँ पर एक मस्जिद है। मस्जिद में यहाँ पे कुछ लोग नीचे नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इतने लाइट कलर का --

एक खंभे में लाइट लगी हुई यहां बोहोत सारी ऑटो खड़ी हुई है कुछ बाइक भी दिख रही हैं।

डीपो है जिसमें फोटोकॉपी भी होती है। यहां पे और यहां पे बहुत सारी बैट भी रखी हुई है। यहां कैरम भी --

कैरम भी रखा हुआ है दुकान के काउंटर पर कुछ लोग खड़े हुए एक बच्चा भी खड़ा है। अंदर बहुत सारी किताबें रखी हैं कुछ पेन पेंसिल भी दिख रहे हैं।

धोती पहन रखी है और व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा है। यहां हाथ एक हाथ नीचे है तो एक हाथ सामने की ओर करता हुआ नृत्य करता हुआ नजर आ रहा है।

एडीडास लिखा है कुछ बैट के ऊपर टी ओ एन लिखा है।

कुछ पौधों में येलो ऑरेंज रेड कलर के गेंदे के फूल खिले हुए हैं सामने खंभा है उसमे लाइट के वायर गए हुए हैं। आस-पास कुछ मकान दिख रहे हैं।

यहां एक मकान दिख रहा है मकान के सामने एक बस खड़ी हुई है बस के चक्के दिख रहे है।

यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है यहां कुछ बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे है।

यहाँ एक घना जंगल दिख रहा है यहाँ पे जंगल में हरी हरी घास उगी हुई दिख रही है कुछ।